और इसमें खूब सारे पेडे हैं और कुछ तारे हैं।

और इसके सामने खूब सारे आदमी खड़े हुए हैं।

अलग कलर के दो फूल है एक नीला एक गुलाबी--

यह एक बहुत बड़ा घरी है।

ये एक बहुत बड़ा डाकघर है।

और व्हाइट और लाल कलर हो रहा है।

ये एक मस्जिद है इसपे व्हाइट कलर हो रहा है।

यह शाखा कल्याणी कर्मचारी राज्य बीमा नियम है।

और खूब बड़ा गेट है और गेट में दो पिल्लर खड़े हैं।

और द्वाल पे कैलेंडर लगे हुए है।

और इसमें कई सारे लेपटॉप धरे हुए है।

और लोहे की रिंग लगी हुई है रिंग लगी हुई है।

गुलाबी और इसमें सोफा और कुर्सी है और जिन्ना भी है।

यह खेलने का एट कुले है।

इस इसके अंदर आठ गेंदे पड़ी हुई हैं।

और डिशें धरी ई हैं और बाल्टियाँ तीन बाल् चार बाल्टियाँ धरी हुई हैं।

यह एक बहुत बड़ा ऑफिस है इसमें व्हाइट कलर हो रहा है।

ये एक खूब बड़ा ए_आर_टी सेंटर है।

यह खूब बड़ी दुकान कॉस्मेटिक की और कपड़ों की दुकान है।

ये राज टायर हाउस है।